ध्यान लगाये हुए हैं। ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। बड़ा ही सुंदर और बड़ी ही आकर्षित मूर्ति है ये। आप देख रहे हैं।

जिसका रेट भी लिखा है तीन सौ पचपन तीन सो निन्यानवे दो सौ निन्यान्वे तीन सौ --

यहाँ जो है बंदा अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर के अंदर गया हरयाली का आनंद ले रहा है आप देख रहे हैं |

देख रहे हैं आप पौराणिक मंदिर में दर्शन करते हुए दर्शनार्थी मन की शांति के लिए यहाँ पर विराजमान पधारे हुए है।

और बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखने को यह मिल रहा है आप देख रहे ती सुंदरता से ये बना हुआ है।

यहाँ आप देख रहे है पानी का गुब्बारा फू --

पुस्तक रखने के लिए रैक भी बनी हुई है | एसी भी बना है एसी भी लगा रखी है | सुन्दर बनाया है |

यह आप देख रहे हैं। काफी पुराना और नया प्रकार का बना हुआ है। यह बंगला नई डिज़ाइन से बना हुआ है। काफी पुराना बंगला है --

और चारो तरफ प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। ग्राउंड में दौड़ रहे हैं। हरा-भरा ग्राउंड में दौड़ --

यह भव्य प्राचीन दिव्य भगवान का प्रांगण मंदिर बना हुआ है |